कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं बहुत अच्छी हरियाली है।

ये बुद्ध भगवान तपस्या करते हुए दिख रहें हैं।

यहां पे भिंडी मिर्ची और प्याज हुई है और बहुत सारी मिर्च एक कांटे में तूल रही है।

हॉस्पिटल के आजू-बाजू बहुत सारे बिल्डिंग्स भी हैं।